किकाड में डिजाइनिंग सर्किट स्कीमेटिक इन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
अब पीसीबी डिज़ाइनिंग में सम्मिलित स्टेप्स देखते हैं
पहली स्टेप अभीष्ट सर्किट के लिए स्किमैटिक यानी आरेखीय बनाना है
दूसरी स्टेप नेटलिस्ट बनाना है
तीसरी स्टेप सम्बंधित फुटप्रिंट्स के साथ घटकों का मैप बनाना है
और चौथी स्टेप सर्किट के लिए बोर्ड लेआउट बनाना है
इस ट्यूटोरियल में हम जो पहली स्टेप सीखेंगे वो है अभीष्ट सर्किट के लिए स्किमैटिक बनाना
इस ट्यूटोरियल के लिए हम किकाड वर्जन 2011 हाइफन 05 हाइफन 25 के साथ उबन्टु 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए पूर्व आवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बेसिक यानि मौलिक ज्ञान है
इस ट्यूटोरियल के लिए हम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट उदाहरण की तरह प्रयोग करेंगे
किकाड शुरू करने के लिए उबन्टु डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने पर जाएँ
पहला आइकन जोकि डैश होम है उस पर क्लिक करें
सर्च बार में टाइप करें किकाड और एंटर दबाएं
स्क्रीन पर किकाड मेन विंडो दिखेगी ध्यान दें उबन्टु 1204 में किकाड का मेन्यू बार उबन्टु डेस्कटॉप के ऊपरी पैनल पर दिखता है
एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फाइल फाइल पर क्लिक करें और फिर न्यू न्यू पर क्लिक करें
अपने प्रोजेक्ट को नाम दें उदाहरणस्वरूप प्रोजेक्ट1 ध्यान दें कि प्रोजेक्ट pro एक्सटेंशन के साथ सेव किया जा रहा है
बेहतर दृश्य के लिए विंडो को रीसाइज़ करते हैं
ध्यान दें यहाँ आपका प्रोजेक्ट सेव किया जा रहा है और अगर ज़रुरत हो तो डिरेक्टरी बदल लें
सेव पर क्लिक करें
सर्किट स्किमैटिक्स ईस्कीमा प्रयोग करके किकाड में बनाये जाते हैं
अब मैं आपको समझाती हूँ कि किकाड में ईस्कीमा को कैसे शुरू करते हैं
किकाड मेन विंडो के ऊपरी पैनल पर पहली टैब ईस्कीमा या स्कीमेटिक एडिटर स्किमैटिक एडिटर कहलाती है
ईस्कीमा टैब पर क्लिक करके स्किमैटिक एडिटर खुलता है
एक इन्फ़ो डायलॉग बॉक्स दिखेगा जो कह रहा है कि यह स्किमैटिक नहीं ढूँढ सकता
ओक पर क्लिक करें
हम यहाँ सर्किट स्किमैटिक्स बना सकते हैं
ईस्कीमा विंडो के दायें पैनल पर जाएँ
प्लेस आ कंपोनेंट बटन पर क्लिक करें
अब खाली ईस्कीमा ईइस्कीमा विंडो पर क्लिक करें
कंपोनेंट सिलेक्शन विंडो खुलेगी
अब हम ईस्कीमा विंडो में 555 टाइमर आईसी स्कीमेटिक रखेंगे
विंडो के नेम क्षेत्र में टाइप करें 555 और ओक पर क्लिक करें
यह lm555एन की तरह सर्च परिणाम दिखायेगा
इस परिणाम को चुनें और ओक पर क्लिक करें
ईस्कीमा विंडो पर घटक का स्किमैटिक दिखेगा
यह आपके कर्सर से जोड़ा जायेगा
सिंगल क्लिक करके घटक को स्क्रीन के केंद्र पर रखें
बेहतर दृश्य के लिए ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए अपने माउस का स्क्रॉल बटन प्रयोग करें
उस घटक पर कर्सर रखें जिसे आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट करना चाहते हैं
आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए क्रमशः फ़1 और फ़2 कीज़ भी प्रयोग कर सकते हैं
आप 555 आईसी पर वीसीसी और गण्ड जो कि ग्राउंड टर्मिनल है या तो देख सकते या नहीं देख सकते हैं
अगर आप इसे नहीं देख सकते तो ईस्कीमा विंडो के बाएं पैनल पर जाएँ
शो हिडेन पिन्स बटन पर क्लिक करें
अब हम ईस्कीमा विंडो में एक रज़िस्टर यानी प्रतिरोध रखेंगे
हमने प्लेस आ कंपोनेंट विकल्प पहले चुन लिया था
इसलिए सिर्फ ईस्कीमा पर क्लिक करें और आप कम्पोनेंट सिलेक्शन विंडो देखेंगे
नेम क्षेत्र में टाइप करें र और ओक पर क्लिक करें
ईस्कीमा पर रज़िस्टर स्किमैटिक दिखेगा जो कर्सर से जोड़ा जायेगा
सिंगल क्लिक करके ईस्कीमा पर कहीं भी रज़िस्टर रखें
हमें दो अतिरिक्त रज़िस्टर्स की आवश्यकता है
हम प्लेस आ कंपोनेंट बटन प्रयोग करके दो रज़िस्टर्स प्राप्त कर सकते हैं
लेकिन क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक रज़िस्टर है अब देखते हैं कि घटक को कॉपी कैसे करें
घटक को कॉपी करने के लिए घटक पर राइट क्लिक करें और कॉपी कंपोनेंट चुनें
घटक की एक कॉपी यानी प्रति आपके कर्सर से जोड़ी जाएगी
सिंगल क्लिक करके ईस्कीमा पर कहीं भी इस रज़िस्टर को रखें
कीबोर्ड शॉर्टकट सी प्रयोग करके यह ज़्यादा तेज़ी से किया जा सकता है
इसके लिए कर्सर को घटक पर रखें और फिर सी दबाएं
फिर से यह कर्सर से जुड़ जायेगा
इसे रखने के लिए एक बार क्लिक करें
Shift और160
क्वेश्चन मार्क की दबाकर शॉर्टकट्स की सूची प्राप्त की जा सकती है
यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स की सूची है
इस विंडो को बंद करें
कम्पोनेंट सिलेक्शन विंडो को खोलने के लिए ईस्कीमा विंडो पर क्लिक करें
आगे हमें दो कपैसिटर्स इलैक्ट्रोलिटिक और सिरेमिक की ज़रुरत है
इलेक्ट्रोलिटिक कपैसिटर जोड़ने के लिए टाइप करें सीपी1 और ओक पर क्लिक करें
सिरेमिक कपैसिटर जोड़ने के लिए टाइप करें सी और ओक पर क्लिक करें
हमें एक लाइट एमिटिंग डायोड जिसे लेड कहते हैं की भी ज़रुरत है
कम्पोनेंट सिलेक्शन विंडो में टाइप करें लेड और ओक पर क्लिक करें
अब हमें एक पावर सप्लाई यानी वीसीसी और ग्राउंड टर्मिनल्स की आवश्यकता है
ईस्कीमा के दायें पैनल पर प्लेस आ पॉवर पोर्ट बटन पर क्लिक करें
कम्पोनेंट सिलेक्शन विंडो खोलने के लिए ईस्कीमा पर एक बार क्लिक करें
लिस्ट अल्ल बटन पर क्लिक करें और आप अनेक पावर नोटेशन्स की सूची देखेंगे
5V प्लस 5 वोल्ट चुनें और ओक पर क्लिक करें
ईस्कीमा विंडो पर एक बार क्लिक करके घटक को रखें
उसी प्रकार ग्राउंड टर्मिनल प्राप्त करने के लिए सूची में से ग्राउंड ग्रौउंड चुनें और ओक पर क्लिक करें
मैं ग्रौउंड टर्मिनल चुनती हूँ
हमें एक्सटर्नल यानि बहरी पावर सप्लाई को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर की भी ज़रुरत है
कम्पोनेंट सिलेक्शन विंडो को खोलने के लिए ईस्कीमा पर क्लिक करें
लिस्ट अल्ल बटन पर क्लिक करें और आप एक सूची देखेंगे
कॉन विकल्प चुनें और ओक पर क्लिक करें
नीचे जाएँ और सूची से CONN 2 चुनें और ओक पर क्लिक करें
दोहरे टर्मिनल वाला कनेक्टर दिखेगा
यह आपके माउस पॉइंटर से जोड़ा जायेगा
इसको स्थित करने के लिए एक बार क्लिक करें
अब हम कंपोनेंट्स को उचित स्थानों पर ले जाकर उन्हें व्यवस्थित करेंगे
घटक को मूव कराने के लिए हम शॉर्टकट की एम प्रयोग करेंगे
एक घटक मूव करने के लिए माउस पॉइंटर को घटक के ऊपर रखें मानिये रज़िस्टर और एम दबाएं
ईस्कीमा पर एक बार क्लिक करके हम इस रज़िस्टर को आईसी 555 के दायीं तरफ स्थित करेंगे
लेड को घुमाने और इसे ऊर्ध्वाधर करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट की र प्रयोग करेंगे
अब हम देखेंगे कि सर्किट डायग्राम के अनुसार घटकों को कैसे जोड़ें
अब घटकों के इन्टर्कनेक्शन यानी जोड़ने के साथ शुरू करते हैं
ईस्कीमा के दायें पैनल पर प्लेस आ वायर बटन पर क्लिक करें
अब हम दो रज़िस्टर्स को जोड़ेंगे
दोनों रज़िस्टर्स के किसी एक नोड पर क्लिक करके हम तार जोड़ेंगे
अब हम आईसी 555 की सातवीं पिन को दो रज़िस्टर्स को जोड़ने वाले तार से जोड़ेंगे
आईसी 555 की सातवीं पिन पर क्लिक करें और फिर दो रज़िस्टर्स को जोड़ने वाले तार पर क्लिक करें
ध्यान दें कि यह अपने आप से एक जंक्शन बनाएगा जो नोड की तरह दिखता है
मैंने घटकों को पहले ही जोड़ लिया है और इसे सेव कर लिया है
अब मैं समय को बचाने के लिए पहले से बनाया हुआ स्किमैटिक खोलूँगी और प्रयोग करूँगी
मैं फाइल मेन्यू पर जाऊँगी और ओपन पर क्लिक करूँगी
एक कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन विंडो खुलती है
येस पर क्लिक करें
मैं वांछित डिरेक्टरी से project1स्क चुनूँगी
अब मैं पहले विंडो को रीसाइज़ करती हूँ
और फिर मैं ओपन ओपन पर क्लिक करूँगी
मैं ओपन ओपन पर क्लिक करूँगी
यहाँ पहले बनाया हुआ स्किमैटिक है
अब हम देखेंगे कि घटकों की कैसे टिप्पणी करें
टिप्पणी करना प्रत्येक घटक को अद्वितीय पहचान देता है
टिप्पणी करना घटकों के क्वेश्चन मार्क को अद्वितीय नंबर्स के साथ बदलेगा
ईस्कीमा के ऊपरी पैनल पर एनोटेट स्कीमेटिक बटन पर क्लिक करें
यह एनोटेट स्कीमेटिक ऐनोटेट स्किमैटिक विंडो खोलेगा
इस विंडो में कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट रहने दें
एनोटेशन बटन पर क्लिक करें
यह आपको चेतावनी देगा कि यह सिर्फ बिना टिप्पणी वाले घटकों की टिप्पणी करेगा
ओक पर क्लिक करें
ऐनोटेट स्किमैटिक विंडो पर क्लोज बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि घटकों पर क्वेश्चन मार्क्स विशिष्ट नंबर्स के साथ बदले गए हैं
फाइल पर क्लिक करें
और इस स्किमैटिक को सेव करने के लिए सेव व्होल स्कीमेटिक प्रोजेक्ट चुनें
फाइल पर क्लिक करें और क्विट चुनें
यह ईस्कीमा विंडो को बंद करेगा
अब किकाड मेन विंडो पर जाएँ
फाइल पर क्लिक करें और क्विट चुनें
यह किकाड में सर्किट स्किमैटिक बनाने के इस ट्यूटोरियल के उद्देश्य को पूरा करता है
अब सारांशित करते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा सर्किट स्किमैटिक बनाने के लिए किकाड में ईस्कीमा का प्रयोग करना सर्किट स्किमैटिक की टिप्पणी करना
निम्न नियत कार्य का प्रयास करें कम्पोनेंट सिलेक्शन विंडो प्रयोग करके ईस्कीमा पर कम्पोनेंट इंडक्टर रखें
आ एक्स और य शॉर्टकट कीज़ का अन्वेषण करें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद